सामने एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

पाइप भी दिखाई दे रही हैं सामने--

सामने बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रही है। उन्होंने टेबल पर कुछ समान रखा है। वे कुछ बनती हुई दिख रही है।

सामने एक सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है लड़के के पीछे हरे भरे--

एक स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहीं हैं टेबल के ऊपर ग्लास रखे हुए भी दिख रहे हैं।

आदमी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है उसके पास में एक बड़ा सा लेटर बॉक्स भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक बहोत बड़ा मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है।